ये एक शॉप है जिसके अंदर बोहोत सारे खिलोने रखे हुए है यहाँ पे यहाँ पे कीरिंग रखी हुई है डॉल रखी हुई है एक कांच का टेबल बना है जिसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामन रखा हुआ--

यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पे छोटे-छोटे फूलों की क्यारी बनाई गये है जिसके चारों तरफ अ जाली लगाई गई है और सामने में बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं बड़ा सा पेड़--

ये एक बड़ी सी शॉप है यहाँ पे काफी सारा खाने का सामान रखा हुआ है बहुत सारी यहाँ पे पानी की बॉटल रखी हुई हैं।